एक बड़ा-सा गार्डन है।

एक बड़ा सा नदी है जिस नदी मे एक कुछ बच्चे खड़े हुए हैं।

हरा-भरा है बादल नीला है और पेड़-पौधे हैं पहाड़ दि --

हरा-भरा है बादल नीला अ सफेद --

पेड़ पौधे हरा-हरा दिख रहा है।

पेड़-पौधा भी है जो हरा-भरा है। बादल सफ़ेद औ नीला --

स्टेसनरी की दुकान है जिस स्टेसनरी की दुकानों में --

राखी का दुकान लगा हुआ है जिसमें हर प्रकार की राखियॉँ --

सी.सी.टी.वी. कैमरा भी ए लगा हुआ है।

एक किंग्स फूडस है।

ये ति जिस होटल तीन फ्लोर का बना हुआ है और का और सामने सीढ़ी बनी है।

पहाड़ है जिसमें बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं रास्ता है।

नीचे कुछ टेबले रखी हुई हैं ऊपर लाइट लगी हुई हैं।

एक ये जो कंप्युटर का दुकान है जिस कंप्युटर की दुकान में --